इस तस्वीर में मुझे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।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

यहां पर मुझे कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे दो आदमी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे एक टी_वी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ छन्नी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर मे मुझे बोरी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे होटल चमददार दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे दो दरवाजे दिखाई दे रहे है।

तस्वीर में मुझे एक पाइप दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे मनीष स्टील वर्क्स का बोर्ड दिखाई दे रहा है।